मुझे इस फोटो में एक मंदिर दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक कमरा दिख रहा है मुझे इस फोटो में चेयर दिख रही है।

मुझे इस फोटो में लाल रंग का पर्स दिख रहा है मुझे इस फोटो में ब्लैक रंग के पर्स दिख रहें।

मुझे इस फोटो में कुछ समान रखा हुआ दिख रहा है।

मुझे इस फोटो में गुब्बारे दिख रहे हैं जिसका रंग नीला है।